दुकान में एक काउंटर भी लगा हुआ है जिसके सामने एक ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी हुई है।

जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

जिसमें बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है।

मिठाई दिखने में बहोत ही स्वादिष्ट और रसीली भरी पड़ी हैं।

ये एक फास्ट फूड शॉप लग रही है।

दुकान दिखने में बहोत शानदार दिख रहा है।

एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो अपने फोन से सेल्फी खींच रहा है।

बच्चे खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं।

ये एक डीजे का सकरीन लग रहा है।

यह एक बहोत ही सुंदर पार्क बनी हुईं हैं।

जिसके बाद पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई है।

बहोत सारे ग्रीन कलर के पेंड़ लगे हुए हैं जो दिखने में बहोत ही सुंदर और--

मिठाई की दुकान लग रही है।

आदमी की फोटो लग रही है।

जो दिखने में कलरफुल और प्यारे हैं।

ये मेरे सामने दो दुकानें नजर आ रहीं हैं।

जिसके टेबल पे बहोत सारे रजिस्टर रखे हुए हैं।

साइड में बहोत सारे ग्रीन कलर के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

लोगों को गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है।

ये एक शादी वाला घर लग रहा है।

साइड पे बहोत सुंदर हरे रंग के पौधे लगे हुए हैं।

यह एक डॉक्टर की क्लीनिक लग रही है।

पेड़ के साथ एक सीढ़ी नजर आ रहा है जो नीचे जा रहा है एक आदमी खड़ा हुआ है।

पार्क के चारों तरफ व्हाइट कलर का ग्रिल लगा हुआ है।

एक पौधे भी लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं।